ये एक धार्मिक स्थल लग रहा है जहाँ पे अ जहाँ पे एक नदी बह रही है जिसके एक तरफ मंदिर है और मंदिर में प्रतिमाये रखी हुई हैं।

और यहां पे ड्रिलिंग है और साईकलिंग है जिसपे लोग साईकल पे रनिंग करते हैं ।

और इसमें तीन खिड़कियां नजर आ रहीं है और एक साइड मै कार है और साइड मै पेड़ भी है।

यह एक बहोत अच्छा अ-अ-अ मनोरम दृश्य है जहाँ पे एक तरफ जो है इसके बहोत सारे पेड़ हैं और बहोत अच्छा बीच में एक --

बाई जॉय लिखा हुआ है और यहां पे एक खिड़की है और इसपे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जिसमे टायगर है एलीफैंट है।

यहां पे एक फ़ूड स्टाल दिख रहा है जिसपे सड़क के किनारे के बोहोत सारे फ़ूड हैं जो एक टिक्की और एक चाट और इसमें --

तीन लाइटें दिख रही हैं जो पिलर पे हैं और साइड में बहोत सारे लोग दिख रहे हैं और बीच बाजार में एक कार दिख रही है जिसपे --